हाइ एक खे पूल ह पूल पानी ह पानी में लइका एक खे छोट सा एक खे बड़ सा लइका आदमी --